ये एक मस्जिद है मस्जिद में लोग यहां आकर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में तलतोत बहुत बढ़िया रखी है टाइल्स लगा रखी है।

मकान दोनों तरफ के दोनों मकानों को जोड़ने के लिए बीच में गैलरी बना रखी है यहां पे पोल खड़ा हुआ है।

एक वेडिंग एनिवर्सरी है। फोटो लगी है सजा रखा हैं।

और लाल कलर की पेंट हो रखी है उसमें और छज्जे निकाल रखे हैं बढ़िया तरीके से--

और एक फादर साथ में है दो फादर साथ में है काम और लेडीसे गाना गा रही है ताली बजा रही है लेडिस हैं जेंट्स हैं--

और गेट लगा रखे है छोटे छोटे दो बच्चे यहां पे पढ़ने आ--

ओ भी बहस कर रहे है मेले में अम टोपी वाला बंदा है।

और अलमारी पे डिजाइन अच्छी जगह रखा है ब्राउन कलर में

ये डिजाइन बनायी जा रही है हैंगर लगाए जा रहे है जीने बनाए जा रहे टेबल बनाये जा रहे--

ब्राउन कलर है ब्लैक कलर है। सामने ओयो होटल है।

कुछ सोच रहा है समंदर सा पानी है और बड़े बड़े पहाड़ है सामने बादल दिख रहे हैं फटे फटे फटे हुए बादल हैं और --

पानी का वाटर पार्क बना हुआ है जिसमें से फिलहाल पानी नहीं रहा है ऑरेंज कलर का पॉट है उसमें तीन प्लेटें बनी हुई हैं।